एक रोड पर ट्रेन दिखाई दे रही है।

तीन डिब्बों वाली और आसपास घर दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे अलग अलग क्वालिटी की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पे एक बहुत अच्छी छोटी सी एक शॉप दिखाई दे रही है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिसके बीच में एक अच्छा सा चबूतरा है जिसके ऊपर एक पिलर है बहुत बड़ा।

मुझे यहां एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

अ उसके बगल में भी एक टेबल सी दीवार कि तरह दिखाई --

और मंदिर के सामने काफी सारा सामान पड़ा हुआ --

मुझे एक डोंगर की तरह दिखाई दे रहा है।

और उस डोंगर में काफी सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

मार्केट दिखाई दे रहा है।

जिसकी छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

एक मेकअप हुआ कपड़े कि शॉप दिखाइ दे रही हैं।

जिन पे ग्रीन कलर का पर्स बिछा हुआ है इन चार पौधे भी --

मुझे यहां पे काफी बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है।

और उस मार्केट में वाइट कलर के लट्टू जूप रहे है काफी --